सरकारी बस है इससे आप ऑफिस जा सकते हैं। ये बारिश के लिए चालू किया गया है। ऐसे हमेशा चलता है लेकिन ये अभी बारिश में फ्री सेवा शुरू की गयी है तो आप इससे जा सकते हैं।

विथ आ डैश कस्टमर अ यहाँ चौको क्रिस्पी चिप्स है चौको चिप्स ई खाइये कॉफ़ी के साथ बहुत मजा --

लीजिए बहोत ही सही रेट का मिलेगा थैंक यू हैव ए नाइस डे ।

बिना टिकट के नहीं आइए जब भी आना है तो टिकट कटा के आइए तो सेफ रहें सतर्क रहें खुश रहिए धन्यवाद।

दोस्तों ये देखिए ये भास्कर बुक डेपो है। यहां पर बहोत सारा किताब मिलता है।

दोस्तों ये देखिए एक फल मार्केट सब्जी मार्केट है तो यहां पर देखिये गोभी है और केला है कच्चा केले और तरबूज है पपीता है आलू है।

फल बाजार है पास ऑरेंज है अनार है सेब है केला है तो आपको जब भी ---